संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। अंदर पिंक कलर की दीवार की बाउंड्रीया बनी हुई --

सामने एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है जिसके ऊपर कमल का फूल बड़ा सा कपड़े का बना हुआ है चारों तरफ से टेंट के बने हुए हैं।

यहां नीचे घांस है बीच में लाल कलर की दरी बिछी हुई है सामने फुआरा है।

यहाँ सामने चारों तरफ छोटे-छोटे और बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं सब पौधे अभी पतले दुबले हैं किनारे पर कुछ बड़े-बड़े पेड़ हैं।

सामने एक सफेद रंग का बड़ा सा महल नजर आ रहा है महल बहोत पुराना हो चुका है इसलिए उसमें काले-काले काइयाँ लग गई हैं।

यहाँ नीचे काफी सारे छोटी-छोटी मछलियां पड़े हुई हैं। किनारे पर मछलियों की पखुड़ियां पड़ी हुई हैं।